और बोहोत ही अच्छे ढंग से इन्हें सजाया हुआ है।

और लाइट भी लगी हुई है और इनकी चारों और बिल्डिंग्स भी बने हुई है ऊँची ऊँची।

और इसपे बिछावन बिछी हुई हैं।

और यहाँ पे विश कुछ विवाह मंडल लिखी हुई है। ये कोई विवाह भवन है।

किनारे-किनारे बोहोत सारे पेड़ दूर-दूर तक पेड़ --

सुविधा है ताकि कचड़ा अंदर न जाए।